एक मस्जिद सी दिख रही है मस्जिद है एक गेट लगा हुआ है।

इसमे और कुछ भी नहीं है ना कोई दिख रहा है ना कोई है बस खाली--

एक बहुत बड़ा ग्राउंड है ग्राउंड मे बहोत सारे पेड़ है।

ये बड़ा सा रोड जा रहा है एक बड़ा गेट लगा हुआ है ।

यहाँ पर बीच में एक नीम का पेड़ खड़ा हुआ है | अगल-बगल बहुत बड़ा मैदान है | मैदान ही मैदान दिख रहा है।

रही है और कोई भी नहीं दिख रहा है फिर सा है।